सामने एक बहुत बड़ा गेट है।

एक बड़ा सा टेबुल भी है और आदमीन लोग जा रहे हैं।

सामने एक कुर्सी है जो की बैठने वाला है सीमेंट का बना हुआ है।

बहुत सारे सामान हैं छोटे-छोटे खिलौने रेड कलर का है पिंक कलर का है येलो कलर का है।

ऊपर में तिरंगा झंडा का फोटो है ऊपर में लाइट जल रहा है व्हाइट कलर का।

फुटबॉल खेलने वाला बड़ा सा मैदान है।

बहुत सारे साइकिल लगे हुए हैं पेड़ के पास।

बहोत सारा बैठने के लिए कुर्सियां लगाया गया है जोकि रेड कलर का है एक कुर्सी ब्लैक कलर का है।